इस तस्वीर में क्रीम कलर की वॉल दिखाई दे रही है दीवाल ।

ये तो दिखाई दे रही है स्लॉट लगे हुए हैं काफी की मशीनें लगी हुई हैं।

इस तस्वीर में दिन का समय दिखाया गया है।

मिरर का ग्लास लगा हुआ है एक व्यक्ति ने ब्लैक पैंट शर्ट डाली हुई है।